इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो दृश्य नदी के बांध का है जहां पर नदी में पानी दिख रहा है।

जैसे कि यहां पर गेंदा के फूल लगे हुए हैं यहां पर और भी प्रकार के फूल लगे हुए हैं।

घूमने की जगह है पेड़ पौधे उगे हुए हैं और दूर दूर पर बिल्डिंग्स दिख र --

यहां पर गाड़ियां खड़ी हुई है यहां पर बहुत सी किताबें रखी हुई है।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य यहां पर बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है।